और कुछ जैसा वहां पर कुछ रखा गया है।

एक गेट भी है और खिड़की भी है।

बड़े बड़े चार पिलर दिखाया जा रहा है।

और एक घर भी है।

और देखा जा रहा है एक बड़ा सा खेत है।

ग्राउंड के चारों तरफ घेरा बना हुआ है।

कालेज के उपर दो लाइट है।

और अच्छे से बताया नहीं जा रहा है वहां पर क्या क्या है।

और दिखाया जा रहा है यहां पर एक दुकान है।

और फ्लैग के साथ में मंदिर मंदिर है या क्या होगा अच्छे से पता नहीं चल रहा है।

और दुकान के ऊपर एक साइन बोर्ड है।

और पेट्रोल पंप पे लोग बैठे हैं।

देखा जा रहा है वहां पर एक रास्ता है और रास्ते के साइड में एक बिजली का खंबा है।

और दिखाई जा रहा है एक बिल्डिंग बना रहे हैं।

उस रस्ते के चारों तरफ बहुत सारे पेर है।

दो नारियल का पेड़ भी है।

कारेंन का टार भी है।

घर को चारों तरफ से घिरा हुआ है।

यहां पर देखा जा रहा है एक बड़ा सा फील्ड है।

एक पाइप दिखाया जा रहा है।

दिखाया जा रहा है एक प्रोग्राम हो रहा है।